और एक आदमी बीच में व्हाइट कलर का जर्सी और येलो पैटं पहना है और दो आदमी ब्लू पहना है नेवी ब्लू --

और टेबल पर यहां कुछ सामान्य रखा हुआ है।

जिसमें से चारों कोना पे येलो कलर का कुछ अजीब से रखा है।

और इधर भी ऊपर भी सीमे भी रखा हुआ है और नीचे लाने भी ढेर सारा मुर्गीयाँ रखी हुई हैं।

ये भी मतलब कोई जगह है यहां पे एक मूर्ति भी बने हुए हैं।

और दोनों तरफ सजाया गया है इधर दोनों साइड में ट्री भी दिख रहे है और छोटा छोटा प्लांट भी है।

और साइड साइड में बड़ा बड़ा ट्री भी दिख रहे हैं।

हां प्यारे बच्चे उधर लाइन में लगे हुए हैं कुछ टीचर्स इधर खड़े हैं।

रहे हैं और इधर व्हाइट कलर का स्कूल दिख रहा है।

यहां पे बाहर एक व्हाइट कलर का टेबल रखा हुआ है उसके ऊपर बैलून से सजाया गया है रेड और व्हाइट बैलून से।

साइड में एक गेट दिख रहा है व्हाइट उसका दवाल दिख रहा है।

यहां पे एक एक टे यहां पे दो तीन टेबल दिख रहा है जिसमें से एक टेबल पे लैपटॉप रखा हुआ है।